ये एक केरला का होटल हैं जो वेजिटेरियन और नॉन-वेजिटेरियन दोनों हैं और यहाँ पे तीन आदमी खड़े हुए हैं जिसमे से एक वॉचमेन हैं यहाँ का |

ये एक जिम की तस्वीर है जहाँ पर एक लड़का एक्सरसाइज कर रहा है ओर--

उ केक्स करके कुछ नाम है इसका।

अ एक स्पोर्ट शो स्पोर्ट शॉप नजर आ रही है अ यहां पे स्पोर्ट शूज मिल रहे है बैट्स मिल रहा है।

एंड यहाँ पे लड़कों की बहुत सी जेन्सेस रखी हुई हैं एक ब्राउन कलर का है एक ग्रे कलर का है ब्लैक कलर की है ब्लू कलर --

स्टैचू नजर आ रहा है जो की ब्लू कलर का ड्रेस पेहना हुआ है रेड कलर की ड्रेस टंगी हुई है।

एण्ड लोअर नजर आ रहा है टी-शर्ट नजर आ रही --